-- रन है बहुत सारे ये तरफ देखे तो फूल लगे हुए है बहोत सारे पौधे लगे हुए है हरी हरे यहाँ पे लेडीज भी है एक रेड कलर कपड़े दिखाई दे रही एक पिले कलर के कपड़े दिखाई बीच में कुछ ये दिख रहा है स्टील कलर भी लगी हुई है।

दोस्तों देख सकते हैं ये ग्राउन्ड है ग्राउन्ड मे बहोत सारे बच्चे खड़े हुए है यहाँ पे गेम्स खेल रहे है अलग-अलग प्रकार के सामने एक बिल्डिंग बन रही है।

दोस्तों देख सकते है आप सामने एक टेबल है उसके बाजू मे कुर्सी रखी हुई है टेबल के ऊपर देख सकते है एक प्लैट है जिसमे बिरयानी रखी हुई है चावल रखे हुए है एक ग्लास है।

ये देखिए ये देखिए दोस्तों बहोत ही शानदार एक वन है जंगल जिसमे देख सकते हैं कुछ --]

यहाँ पे देख सकते हैं की स्कूल दिख रहा है इसमे सामने व्हाइट कलर की बिल्डिंग है अलग-अलग ब्लैक कलर के दरवाजे लगे कुछ खिड़किया लगी हुईं --।

हैलो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैंआप फाइनैन्स की ये बैंक का बोर्ड दिखाई दे रहे हैं एक पीला कलर का बोर्ड एक रेड पीला कलर का सामने बिल्डिंग बनी हुई है।

यहां पे देखिए पेट्रोल पंप दिखाई दे सकते है यहां पे एक कुत्ता बैठा हुआ है निचे देखने पर देखिए लाइट लगी हुई ऊपर --